दूसरी तरफ एक आदमी अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है।

सड़क के किनारे स्कूटी खड़ी हुई है।

दुकान के बीच में एक आदमी प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ अपना फोन इस्तेमाल कर रहा है।

सड़क के किनारे लोग खरीददारी कर रहे हैं दुकानों में खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

टेबलों को रो के हिसाब से लगाया गया ह।

सामने एक मिठाई की दुकान है।